उसकी नीचे बहुत सारे ब्लू कलर की बॉट्स लगे हुए है साइड में एक येलो कलर का घर है जिसके पास में दो - चार पेड़ लगे है और एक इलेक्ट्रिसिटी का --